इस इमेज मे हमे एक जिम दिखाई दे रही है जिम मे मशीन रखी हुई है जो काले रंग की है और कुछ इक्विप्मन्ट दिखाई दे रहे है और डंबल भी दिखाई दे रहे है।

इसी में इं हमे एक रास्ता दिखाई दे रहा है रास्ते पे एक आदमी चल रहा है रास्ते के बाजू मे कुछ गाय दिखाई दे रही है और बीच मे एक इमारत दिखाई दे रही है।

पेपर पड़े हुए हैं और दुकान में बहुत सारी मेडिसीन दिख रही है दवाई दिख रही है डिब्बे दिख रहे हैं जो हरे और सफेद रंग --

सामने दीवार दिखाई दे रही है जो गुलाबी रंग की है और कुछ किताबें रखी हुई दिखाई दे रही हैं नीचे टाइल्स दिख रही हैं जो सफेद रंग की है।

इस इमेज मे हमे एक होटल दिखाई दे रहा है होटल मे गोल्डन रंग की लाइट जलती हुई दिख रही है और सामने की तरफ खाली जगह पड़ी हुई है जिस मे लाल और सफेद रंग की टाइल्स लगी हुई है।

जो लाल और काले रंग की है और कुछ बोर्ड भी दिखाई दे रहे है सामने दिवार दिखाई दे रही है और नीचे फ्लोर दिखाई दे रहा है जिसमे टाइल्स लगी हुई है।

और एक कबाड़ दिख रहा है जो जो काले रंग का है उसमे कुछ कपड़े रखे हुए है और बालकनी दिख रही है जिसपे कुछ डिब्बे रखे है और बल्ब भी दिख रहा है लाइट जलती हुई दिख रही है।

इस इमेज में हमे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर ब्राउन और हरा है सामने एक काले रंग का गेट दिख रहा है।

इस इमेज मे हमे पहाड़ दिखाई दे रहा है सामने की तरफ कोहरा भी दिख रहा है और पहाड़ पर कुछ घास भी दिख रहे है।